पिछे येलो कलर की दीवार बनी हुई हैं दीवार के अंदर--

यहां पर बहुत सारे बड़े बड़े कूलर पड़े हैं सफेद कलर के लोहे के।

एक छोटा सा कमरा बना हुआ है यहां पर--

येलो कलर की बस के आगे एक गाड़ी है सफेद कलर की --